अ एक दृश्य शादी घर के बाहर का है जहां पे टेंट लगा हुआ है।

यहाँ पे बहुत सारे फूल से सजा हुआ है और यहां पे नीचे हरे रंग का कालीन बिछा हुआ है।

पीछे कांच का स्लैब बना हुआ है जिसमें सजाने का सामान लगा हुआ है ।

इसका गेट कांच का है और यहां एक टूल है।

बीच पे एक बड़ा प्लाई लगा हुआ है।

यह एक फ्रिज भी बना हुआ है जिसके अंदर कुछ सामान रखा हुआ है और यहां गुब्बारे से सजा हुआ है।

इसके नीचे टेबल है जो कि लाल रंग का है।

पास में कुछ ए_सी का वेंटीलेटर भी लगा हुआ है।

यह दृश्य जिम का है जिसक दीवार का रंग पीला है ।

इसके पीछे बोर्ड है और कुछ बैलून सजा हुआ है यहां एक कुर्सी भी लगा हुआ है।

यह दृश्य एक रूम का है जिसका दीवाल का रंग पीला है।

दृश्य एक नर्सरी का है यहां पे बहुत सारे पौधे और प्लांट्स लगे हुए हैं जैसे गेंदा का फूल।

राइट साइड में रेलिंग लगा हुआ है जोकि का काले रंग का है।

यह दृश्य एक तालाब के किनारे का है जहां पे कुछ पत्थर है।

यह दृश्य एक पार्क के बाहर का है जिसका बाउंड्री का रंग सफेद है और इसमें रेलिंग लगा हुआ है।

इसके पास में कुछ गमले में पौधे लगे हुए हैं।

राइट साइड में बहोत सारी गाड़ी दिख रही है और एक गाड़ी का रंग सफेद है।

यह दृश्य एक राशन के दुकान का है यहां पे एक लाल रंग का पोस्टर लगा हुआ है।

यहां पे कुछ लंबे लंबे डंडे टाइप के लगे हुए हैं ।

अंदर गेट है जो कि ब्राउन रंग का है इसके बाहर एक हरे रंग का डसबिन रखा हुआ है और कुछ लोग खड़े हुए हैं।

के पास में चेयर लगा हुआ है जिसमें लोग बैठे हुए हैं।

काउंटर के ऊपर भी बहुत सारे सामान रखे हुए हैं।